यहाँ से आसानी से हम लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवा सकते हैं बहुत ही आसनी से डाला जाता है बाइक उइक मे आसानी से चलने फिरने में सुविधा होता है और बहुत सस्ते रेट में बहुत अच्छे मे मिलते हैं कोई चीज का दिक्कत नही आसानी से बहुत ही अच्छा होता है इ सब ।